ये तस्वीर बहोत सारे लोगों की हैं।

सिलाई की मशीने रखी है और लेडिसो के सूट भी टंगे हुए हैं।

बहोत सारे बिजली के तार भी दिख रहे हैं।

उसके पीछे एक बहोत बड़ी सफे--

ये तस्वीर एक पारक की है।

और एक जिला भी दिख रहा है।

यहां एक पार्क भी है एक कार भी दिख रही है।

किलास में बहोत सारे बेंच डले हुए हैं।

बहोत बड़ी एक बिल्डिंग दिख रही है।

यहां बहुत सारी इटें भी बिखरी पड़ी हैं।

पार्क में पानी भरा हुआ है।

बहोत सारी गाड़ियों की है गाड़ियों का रंग सफेद और--

बिजली का खंबा भी है और बहोत सारे तार भी है।

ये तस्वीर बहोत सारे बम पटाखों की है।

ये तस्वीर एक ट्रैक्टर की है।

यहां एक लाल कुर्सी भी रखी हुई है।

सोफा भी है और एक दरवाजा भी दिख रहा है।

ये तस्वीर एक छत की है।